यहाँ पर साइकिल है। यहाँ पर --

यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तालाब के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है।

हड्डी के ढांचे के पास एक मशीन रखी हुई है पीछे एक पर्दा डला हुआ है।